इस चित्र में ऑटो नज़र आ रहे हैं जिसमें सवारी बैठी हुई हैं। पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं।